इस फोटो में मुझे बिजली की तारें दिखाई दे रही हैं।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

बिजली के काम्बे दिखाइ दे रहे हे।

इस फोटो में मुझे झूले दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे मेडिकल स्टोर दिखाइ दे रहा हैं।

इस फोटो में मुझे बिजली की तारें दिखाई दे रही हैं।

बहोत सारे लोग दिखाई दे रहें हैं।

इस फोटो में मुझे कुछ क्रीमें दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे दरवाजा दिखाइ दे रहा है।